एक ब्रिज एक नदी का पुल जो नदी के ऊपर से गया हुआ है नदी में पानी बह रही है और कुछ सतहों पे पत्थर उभरा हुआ है।

दो व्यक्ति जो ब्रिज के किनारे बैठे हुए हैं और इसके पास कुछ लकड़ियाँ हैं।

एक केनरा बैंक का बोर्ड लगा हुआ है नीचे में एक पाइप लगी हुई है और नीचे में एक --

एक सफेद का चित्रकारी किया गया है बगल में कुछ गमले और दिये हैं और फूल --

पूल-पुल के दोनों और कुछ बाउंड्री लगी हुई है जो सीमेंट से बना हुआ है सीधे में --

एक बस जो मर्सिरीज कंपनी की बस है मनीष लिखा हुआ है बस के सा बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ हैअ पीछे एक--

आसमान दिखाई दे रहा है गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहाँ लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है और गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है बिजली का तार लगा हुआ दिखाई दे रहा है।